ये सिटी रिक्शा है और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है और तीन पहिये वाला है और ये - ये किसी शोरूम के अंदर का लग रहा है और ये बहुत ही बेहतरीन है और इधर कुछ सीसा-वीसा का भी ल - लगा हुआ हैं।

भारतीय बैंक सहरसा का है जो साखा कचहरी परिसर का है और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है और इधर भारतीय स्टेट बैंक भी --

यह नाव लग रहा है और यह पानी में है और यह बहुत ही सुन्दर लग रहा है और यहाँ पे देख सकते है कुछ सीढ़ी-वुढी भी है और उधर भी कुछ गाछी-उछी और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है और इधर भी कुछ नाव-उव है।

का नारा पिता का नाम कुछ ऐसा-वैसा लिखा हुआ है और ये सहरसा का है और सहरसा बहुत ही अच्छा जगह है और इधर पीछे कुछ पेड़- पौधा भी है और बहुत ही अच्छा लग रहा है सुन्दर है।

यहाँ पे पानी टाईप का लग रहा हे ओर यहाँ पे रेलवे क्रोसिंग टाईप का हो रही हे ओर यहाँ का व्यू बहुत ही जबरजस्त लग रही हे ओर उधर देख सकते हे खुच जंगल वगल भी और उधर भी कुछ दुकान उकान है --

और बगल में भी कुछ इन जूने छे और ये बहुत ही सुंदर देखने में लग रहा है और बहुत ही अच्छा गाड़ी है और ये ग्लैमर लग रहा है।

और ऊधर कुछ पीछे कुछ जंगल- वंगल भी है और ये पानी-ओनी भी है और ये बहुत ही सुंदर है और बहुत ही अच्छा लग रहा है और इधर कुछ ईंटा-ओटा है और ये फर्श-ऑर्श है और ये बहुत ही बढ़िया लग रहा है बहुत ही सुंदर।